यह एक टैटू आर्टिस्ट की शॉप है जिसमें टैटू की दुकान है।

सैट है तीन तीन के एक ब्लैक और एक सिल्वर का साथ में एक बॉक्स रखा हुआ लोहे का सामान रखने का।

और सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा है। वाइट कलर का फर्श है।

चेक आउट किया हुआ है लाइटे लगी हुई है खंभे हैं कंपनी का कलर --

ये एक कमरा सा है जहा पे लॉक वाली ईंट है।

मिट्टी हैं लाइट के खंबे हैं चेयर व--

ये एक बोर्ड लगे चोपड़ा स्टील के नाम से और एक बोर्ड लग रह हैं।

लाइटें जल अ रही हैं साथी में एक सामने में फुव्वारा है पानी का पानी के अंदर है बिल्डिंग का डिजाइन बहुत अच्छा है रेड की शाइनिंग बहुत अच्छी है।

ऊ वायर वगैरा खटके वगैरा है गद्दा सफेद रंग का लाल रंग का कंबल है बैग है दो तस्वीर है।

यो एक बहोत सारा बड़ा जोड़ है जिसमें बहोत सारी भैंसे हैं बिल्डिंग वगैरा है इसमें पानी की तीन पाइप है बहुत सारे--